यह एक मोड़ है इस मोड़ में एक बिचाली का घर बनाए हुए है।

बगल-बगल में बाउंड्री भी की गई गए है यह जगह देखने में बहुत ही अच्छे --

आते हैं यह क्वार्टर बहुत अच्छे जगह पर बनाया गया है यह जगह शांत जगह --